और यहां पे दो लोग खड़े हुए हैं।

छोटे-छोटे नारल के झाड़ हैं।

यहां रोड पे से देख रहा हूं यहां पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है।

जनरल ऑफ शिपमेंटिंग है।

वो किसी और को बात कर रहे हैं वहां पे चिकन काट रहे हैं।

चट्टानों के बीच में छोटे से दो घर हैं।

यहां पर अंकल आंटी हैं और बच्चे --

यहां पर बहुत सारे छोटे-छोटे झाड़े हैं और यहां पर--

तरकारी के छाड़े हैं और फूल के झाड़ें हैं।

बाएं हाथ के तरफ में बड़ी सी बिल्डिंग है उसका रंग--

यह जमीन किसान की है और यहां पर खेती चलती --

और यह एक गाड़ी में जा रही है।

और यहां पर बहुत सारे दुकानें--

और यहां पर बहुत सारे लोग हैं।

यहां पर बहुत सारे फूल हैं।

यहां पर बहुत बड़ा सा लोहे का शेड है और यहां पर कुछ--

यहां पर बड़ी सी चट्टान है और यहां पर--

हां पर बहुत बड़ी चट्टान है।

और यहां पे पिलर लगा चुके --

यहां पर एक ऑफिस है यहां पर एक टेबल है उसका रंग काफी है और उसके ऊपर--